कुछ इंसान दिख रहे हैं और साथ में कुछ दुकाने दिख रही हैं।

यह होटल मधेपुरा यहाँ पर दिख रहे हैं एक दो आदमी बाइक पे भी दिख रहा--

इसमे बहुत सारी गाड़ियां और कुछ लोग गाड़ियों से जा रहे हैं साईकल साइकिल वही इसमे बहुत सारी खिड़किया--

लो इस शीशे के अंदर बंद हैं। साथ ही कुछ चित्र बने हुए हैं। वो इस चीज को बता रहे हे के वो क्या हैं।

इसके पीछे कुछ लोग दिख रहे है आस-पास के वातावरण हरे-भरे है साथ मे एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग दिख रही है।